यहां पे दीवाल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है इसमें एक व्यक्ति लिखते हुए नजर आ रहे हैं दीवाल की कलर व्हाइट है।

दीवार में खिड़की नजर आ रही है जो शीशे की मदद से बनी हुई है।

यहां पे दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को समान देते हुए नजर आ रहे--

में चूड़ी नजर आ रही है इसमें टाइल्स लगे हुए हैं।

दीवार में पोस्टर भी चिपकाए गए हैं।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

काफी सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनके कपड़े का कलर अनेक है।

नीचे कर काफी सारे कपड़े बिछाएंगे हैं जहां पर तीन चार व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके कपड़े कलर अनेक है।

यहां पे काफी सारे फूल और पत्ती नजर आ रही है जिसके अंदर छोटे छोटे मछली भी नजर आ रहे हैं।

पीछे की ओर पानी बहते हुए नजर आ रही है।

ऊपर की बैकग्राउंड भी वाइट है ऊपर के और लाइट भी लगे हुए हैं।

पीछे की ओर छोटे छोटे छरि और पत्थर भी नजर आ रहे हैं।

नीचे पर पक्की भी की गई है ऊपर का बैकग्राउंड वाइट है।

इसी की ओर एक कपड़ा नजर आ रहा है।

ऊपर की ओर एक पंखा भी लगा हुआ है जिसकी कलर ब्लैक है।

नीचे की ओर पक्की की गई है दीवार की कलर येलो --

ऊपर का बैकग्राउंड भी व्हाइट है ऊपर की ओर पंखे भी लगाए गए हैं।

पीछे की ओर लकड़ी भी रखे हुए हैं यहां पे नीचे के ओर पक्का भी किया गया है।

यह एक फील्ड का दृश्य बना हुआ है जहां पे मिट्टी और छोटी छोटी घास भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर टॉर्च भी रखी हुई है जिनकी कलर अनेक है।

पीछे की और एक व्यक्ति खड़े हैं जिनके सर पे सीमेंट का बोड़ा भी है।

यहां पे बैलून से डेकोरेशन किए गए हैं बैलून की कलर व्हाइट एवं पीला है।

साइड में पेट्रोल पंप भी नजर आ रहा है।

यहां पे काफी सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इनके कपड़े के कलर अनेक हैं।

इनके हाथ में सुप नजर आ रही जिसमें काफी सारे फल रखे हुए हैं जहां पे काफी सारे व्यक्ति हैं जो छठ करते हुए नजर आ रहे हैं।